हरी हरी घास भी दिखाई दे रही है यहां पर एक पत्थर का घोड़ा भी दिखाई दे रहा है जिस पर एक वीर पुरुष की मूर्ति दिखाई दे रही है।

और कुछ लेडीज दिखाई दे रही है जो कि हाथ जोड़ कर के खड़ी हुई है एक पंडित अपना हाथ बांधे खड़ा है और एक पंडित हवन कुंड में कुछ--

सफेद दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग की बालकनी भी दिखाई दे रही है जिसमें जालियां लगी हुई है।

जो कि शीशों के अंदर पैक दिखाई दे रही हैं यहां पे गणेश जी की मूर्ति भी दिखाई दे रही है जो काफी पुरानी नजर आ रही है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पे पार्टी का एक दृश्य दिखाई दे रहा है यहां पे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।